ये तस्वीर देख रहे। ये सदर अस्पताल गोपाल गंज की है जहां --

लोग जमा हुए हैं। कुछ पूजा पूजा में बैठे हैं।

इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आसपास खूब बोहोत ही खुबसूरत जंगल है और बीच में एक --

एक रिवर से पानी --

ये पड़ी हुई एक पाइप लाइन भी है।

सलून की दुकान है जिसमे यह लड़का एक खड़ा हुआ है। एक साथ एक लड़का बैठा हुआ है।

पूजा कर रहे है और सामने कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

बुद्ध भगवान् की लगी है। आमने सामने दो तस्वीरे भी हैं। दो --

इस इमेज में आप देख रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल में --

घर है। इसमें दो विंडो वगेरा लगी है। एक नीचे है।

और सामने गेट खुला हुआ है। ऊपर पंखा भी बंद है।